और पीछे साइड में लिखा हुआ है जी टी और फूलो से सजाया गया है कार को --

और दुकान के ग्लास पे लाइटे भी लगी है दुकान का नाम है साहिल स्ट्रीट स्टूडियो ।

और एक मैकैनिक गैरेज के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक गाड़ी है जोकि उसकी टंकी लाल कलर की है और उसकी सीट काली कलर की है।

यहाँ पे एक छोटी-सी खुली जगह है जिसमें छोटे-छोटे पौधे हैं।

यहाँ पर दो बदक है एक काली कलर की है और एक चॉकलेटी और वाइट कलर की है।

यहां पे एक तरकारी की दुकान है जिसमें बहोत सारे सब्जियां हैं।

जिसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है बस को फूलों से और--

जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुए है ब्लैक कलर की पैंट।

एक टीचर भी खड़ी हुई है जिस के हाथ में पर्स है।

और दो ब्लैक कलर की कुर्सियां भी है और आस-पास में जो है बड़े-बड़े ग्लासेस लगे हुए है।

यहां पे एक छोटा सा मैदान है मैदान के बीच में बच्चों के खेलने की एक चीज है।

उस चीज के पीछे बड़े-बड़े पेड़ है जो कि हरे कलर के हैं।

यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर रखे हुए हैं जो के ब्लैक कलर के हैं।

जो कि बहुत लंबा है उसके पीछे बहुत सारे पेड़-पौधे हैं और एक --

और एक बालकनी भी है जिसमें बड़े-बड़े काँच लगे हुए हैं ।

और ये बस के पीछे एक बड़ा-सा पेट्रोल पम्प है वहाँ पे एक लौहरी भी खड़ी हुई है।

यहाँ पे एक बड़ी-सी क्रैन है जो कि एक आदमी चला रहा है।

ये एक पासपोट सेवा सर्विस एक्सेलंस ऑफिस है जिसमे बहोत बड़ा ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और पीछे बहुत सारे टेबल हैं जिस पे पानी के जग और पीने का गिलास भी रखा हुआ है।

और बहोत सारे ब्लैक कलर के चेयर भी हैं और दो थैले भी है।

यह एक जूस की दुकान है जिसमें एक एसी लगी हुई है।

सामने एक काउन्टर टेबल रखा हुआ है और एक फ्रिज भी है व्हाइट कलर की--

उस बोर्ड के नीचे एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई है।

औरत ने सारी पहनी हुई है और बुजुर्ग आदमी ने व्हाइट शर्ट और पैन्ट पहना हुआ है।

जिसको हरे कलर के कपड़े पहनाए है उसके बाल भी हरे कलर के हैं।

ये एक मच्छी बाज़ार हैं जिसमें बहुत सारी मच्छियाँ है छोटी-बड़ी ।

यह एक स्कूल है जिसका अभी काम बाकी है।

और नीचे एक नॉटिस बोर्ड लगया गया है बच्चो में लाल कलर की टी शर्ट पेहनी है और कुछ बच्चो ने --

यहां पर एक ढाबा है जोकि बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ढाबे का कोको कोला चौधरी--

और एक बैठने के लिए टेबल भी है जिसके पीछे एक स्टोर है।

के पीछे एक बहुत बड़ा सा झाड़ भी है ।

और बीच में छोटी-सी नाली है उसके ऊपर एक ब्लू कलर का--

और एक बहुत बड़ा सा लाइट का खंभा भी है ।

येलो कलर की लाइटे जल रही हैं और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ब्लू कलर की--

यहाँ पे एक कार है जिसका बोनट निकाला गया है और कार का इंजन दिखाई दे रहा है।

इंजन में एक बोतली भी लगी हुई है और पीछे की डिग्गी भी खुली हुई है।

उस दुकान के बाहर एक स्कूल की बस जा रही है जो की पीले कलर की है।

और दुकान के साइड में एक बाकिट रखी हुई है।

की-पैड वाले फोन के डब्बे का कलर है ऑरेंज कलर --

यहाँ पे दो कार खड़ी हुई है और एक ट्रेवलर खड़ी हुई है और एक कार का कलर चोकाल्टी है और एक--

कार का कलर व्हाइट है और ट्रेवलर का कलर भी व्हाइट है।

यहाँ पे एक छोटा सा घर हैं उसके साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ।

और यहाँ पे दो लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।

ऑफिस की दीवार जो है वाइट कलर की है और पीछे एक ग्लास लगाया गया है ग्लास का--

और ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ है और उसने शूज भी पहने हुए हैं।